और यहां पर बोड भी लगी है बोड के सामने चेयर रखी हुई है।

ये एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जो की एक कॉलेज की और काफी बड़ी दिख रही है| और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग काफी बड़ी है।

इस डी_जे के शोकेस में जो है साउन्ड बॉक्स वगैरह मिलता है।

ये एक तालाब दिख रहा है झील उसके पास में --

और यहां पे अलग-अलग बेंच रखे हुए हैं और ये बेंच काफी तादात में रखे हैं।